इस तस्वीर मे हमें एक नीला कलर का डस्टबीन दिख रहा है।

इस छवि में हमें बहुत सारे रंग बिरंगे एक झूला दिख रहे हैं।

इस छवि में हमें एक पार्क जैसा एरिया दिखाया गया है।

छवि मे खेत का रंग हरा है।

ये तस्वीर मे बहोत सारे आदमी दिख रहे है।

ये तस्वीर में बहुत सारे सब्जियां दिख रही हैं।

ए छवि एक रोड का है।

इस छवि मे हमें एक छोटा सा बिल्डिंग दिखाया गया है।

छवि में एक बिल्डिंग है। जो यूनियन बैंक है।

इस छवि में हमें एक गेट दिख रहा है।

ये तस्वीर में हमें झरना दिख रहा है।

इस छवि में हमें एक रेस्टोरेंट दिख रहा है।

इस छवि में हमें दो हेलमेट दिख रहे हैं।

इस छवि में हमें बहोत सारे आदमी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक सफेद पंखा दिख रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक बड़ा सा रोड हाइवे दिख रहा है।

इस छवि में हमे बहोत सारे आदमी दिख रहे है जो बस मे चढ़ रहे है।

इस छवि हमें एक बड़ा सा बुक स्टोर दिखाया गया है।

इस छवि में हमें एक इंसान खड़ा दिख रहा है।